ये यहां पे एक बोलेरो पिकअप का दिख रहा है।

हमें यहां पे एक ए_टी_एम मशीन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां में ढेर सारे बैलून फैन दिखाई दे रहा है।

कुर्सी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां पे एक बड़ा सा लेक दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक इंसान एक घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में हमको एक शॉप दिखाई दे रहा है।

यह पे एक चर्च घर--

यहाँ पे बहुत सारा इंसान प्रे करते हुए दिख रहा है।

यहां पे एक बरा सा बंबू गेट दिखाई दे रहा है।